और दो बोर्ड भी लगा हुआ है एक सफेद और एक काले रंग का।

उधर पीछे खिड़कियां भी है। खिड़कियां ऊपर का खुला हुआ है और उसमें से लाइटें आ रही हैं।

ये एक मंदिर का पिक है इसमें हरी ओम मंदिर लिखा हुआ है।

नीला आसमान है बीच में एक छोटा सा झंडा लगा हुआ है।

साइड में भी एक हरा भरा पेड़ दिख रहा है।

जो बिल्डिंग ही पिंक लग रही है रात का समय है इधर पेड़ भी लगा हुआ है लाइटें जल रही है इधर--

इधर बीच में एक खंभा भी लगा हुआ है बाइक आगे खड़ी है।

आज इसमें और भी सब बहुत सारे पार्ट रखे हुए हैं।

उधर कुर्सियां लगी हुई हैं लोग बैठे हुए हैं।

ये एक एरिया है जहां पे पेड़ पौधे और बाकी भी चीजें ट्रीज वगैरा लगी हुई है।

इधर भी इधर चारों तरफ एक बाउंड्री भी दिख रही है और खुला आसमान है।

और पार्क के पीछे बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

इधर आदमी औरत भी खड़े हैं जो अपने बच्चो को मतलब झूला ऊला झूल--

और बहुत प्रचार भी यह बोर्ड लगा हुआ--

यह जैकेट काला कलर का जैकेट और पिंक कलर --

बाहर भी लाइन लगा हुआ है औरतों का।

ये एक कपड़े का शो रूम है।

खिड़कियां दिख रही हैं शटर खुला है।

और बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे गुम्मद बने हुए हैं।

अ इधर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं बोलेरो जा रहे हैं।

यहां बड़ा सा एक मैदान है।

और खूब अ बहुत सारा पानी भी दिख रहा है।

ये एयरपोर्ट है और इसमें बहुत सारे लाइटें जल रही है नीचे फर्श बहुत अच्छा दिख रहा है।

दुकान के अंदर लाइटें जल रही हैं आदमी लोग उधर पुरुष महिला लोग खरीदारी कर रहे हैं।

अह बीच में लाइटें भी दिख रही हैं।

सामने एक दुकान भी है जिसमें शटर लगा हुआ है।

इसमें गेंदा भी दिख रहा है कैंची भी दिख रही कैंची भी टंगी हुई है।

फोटो के अंदर एक हम देख सकते हैं।

हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और सड़क है काफी साफ सुथरी सड़क है।

ये कोई पर्यटन स्थल है।

लेकिन उनका चेहरा नहीं दिख रहा है वाइट शर्ट पहिने हैं और ब्लू कलर का कोट पैंट पहने हुए हैं टाई भी लगाए हैं।

इसमें बहोत अच्छा दो तरफ से पाया लगाया हुआ है।

इधर एक शीशा एक शटर बंद है अ फर्श बहुत अच्छा--

इधर पीछे ढोलक भी टंगा हुआ है और बहोत सारे कलाकार बैठे हुए हैं।

जिसमें लेडीज लेडीज भी हैं और पुरुष भी हैं।

बहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं घरी हरी भरी घा घासें दिख रही हैं।

बहुत सारी लाइटें जल रही है।

नीचे फर्श बहुत अच्छा दिख रहा है।

और बीच में लकड़ी का गट्टा भी लगा हुआ है।

पतली सड़कें दिख रही हैं सड़कें पर तीन चार ठो गाड़ियां जा रही हैं।